यहां पर खिड़की तो देखो कितनी सारी है। एक दो अरे बा रे पता नही कितनी है। यहां एक एक फील्डर भी --

वैसे भी कितना सुन्दर है। इसकी बगल के पेड़ तो देखो खंभे तो देखो और इसके बगल में एक घर बना है। देखो तो एक बार उहु --

जैसा कि आप जानते हैं रात का समय है। यहां पर लोग हैं। किस लिए हैं क्यू हैं।

और उसके नीचे देखो कम से कम छः या सात गमले रखे हुए हैं। हर गमले में न अनेक-अनेक फूल हैं।

उस दुकान पर सब्जी मिलती है। जैसे कि गोभी मूली खीरा बैंगन आदि सब्जियां मिलती हैं।

उसके बगल मे कपड़े की भी दुकान है। वहाँ पर अनेक प्रकार के कपड़े मिलते हैं।